येलो कलर के पम्पलेट है। साइड मे पुलिस है।

सामने जो है बिल्डिंग है जिसपे कासी चाट भंडार लिखा हुआ है।

ऎसी लगे हुए हैं। एसी के बॉक्स है आगे जो है --

बत्तख है सामने नदी है छोटी-सी।

नीचे खिड़की जाला है। जिस पे एक नंबर दो नंबर लिखा है।

यहाँ अ पुकनी है। पीछे मिरर है। टेबल है।

एरोप्लेन भी है। एयरोप्लेन पे ब्लू कलर का पेंट हुआ है।